बुक्स की शॉप है जहाँ पर एक फॅन --

ये एक्स मेक्स ट्री बहुत ही सुंदर लग रहा है।

और गाड़ी यहीं पर स्टैंड की हुई है।

एक लड़की एक सेलून में बैठी है और अपने मोबाइल --

खड़ी है कुछ चारा खा रही है और सामने.

यहाँ पर एक चेयर में एक लड़का बैठा हु--

और गार्डन है खाली मैदान --